आसपास एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जो कि पेड़ पौधों से ढका हुआ है।

पूरे पेपर पर बिछा के अच्छे से सहयारकर रखा गया है।

दिखाए गए छवि में एक सुंदर सा बगीचा दिखाया गया।

बैंक के बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड नजर आ रहा है जोकि एस_बी_आई का है और उसे नीले रंग से रंगा गया है।

रोड के किनार वाले बॉउंड्री वॉल पर आकृती बनाई गये है जोकि देखने में काफी आकर्षक है कुछ ही दूर पर एक बड़ा सा भवन भी दिखाई दे रहा है।

इमारत के बाहर एक बड़ा साइन बोर्ड लगाया गया है जिसमें पंचायत सचिवालय सलीमगंज लिखा गया है।

इमारत के बाहर कहीं दो पहिया वाहन गाड़ी खरे --

बगीचों मे फेंसिंग भी की हुई है फेंसिंग काफी मजबूत है एवं उसके उस पार भी बहुत सारे फूल पौधे नजर आ रहे--

कमरे में लाइटिंग की उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं एवं एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जिसने भूरे रंग की टी_शर्ट पहनी है।